यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके अगल बगल में भी कुछ मकानों को देखा जा सकता है सामने एक बड़ा सा खम्बा दिखाई दे रहा है जिसपे लाइट की तारे लगी हुई साफ़ देखी जा रही है।

एक कार वगैरा खड़ी हुई दिखाई दे रही है अगल बगल में कुछ बोर्ड लगा हुआ है सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जो की काले रंग का है।

सामने एक कार दिखाई दे रही है पीछे की तरफ में एक पोस्ट ऑफिस देखा जा सकता है और पीछे की तरफ में कुछ पेड पौधे दिखाई भी दे रहे --

यहाँ पर कई महिलाओं को एक साथ देखा जा सकता है और ऊपर की तरफ में कुछ पंडाल लगी हुई दिखाई दे रही है ये पंडाल हल्का अपारदर्शी देखा जा सकता है और ये रेड कलर का है।